ये एक लेडिस कपड़ो की दुकान दिखाई दे रही है जिसमें एक डमी को लाल कलर का --

छोटा सा जनरल स्टोर दिकाही दे रहा है जिसपे एक टेबल लगा कर एक दुकानदार कुछ डब्बे रख कर उसमे सामान बेच रहा है।

और इस मशीन का कलर काला है।

एक बड़ी नदी का दृश्य दिखाई दे रहा है जिसमें एक छोटी सी नाव है और उस नाव को एक नाविक चप्पू से चला रहा है।

एक डांस प्रोग्राम का दृश्य है जिसमें भरत नाट्यम डांस प्रस्तुत किया जा रहा है जिस --